नीचे दो मूरत डिजाइन के पास मोमबत्तियां लगाये जाते हुए।

इस तस्वीर मे हमें एक विशाल फ़ूड ट्रेक रेस्टुरेंट का पिक्चर देख सकती हूँ।

अब हमें इस पिक्चर मे जो दिख रही है।